यह किसी पहाड़ी क्षेत्र के इलाके का दृश्य है तस्वीर के सामने कांच वह करकट की मदद से बना एक काफी सुंदर घर है।

एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दृश्य है इस केंद्र की इमारत नारंगी रंग के रंग से रंगी हुई है।

मैदान का पूरा हिस्सा कई सारे पेड़ो से घिरा हुआ है मौसम भी साफ सुथरा है।

यह एक दुर्गा पूजा उत्सव के पंडाल का दृश्य है पंडाल में मौजूद पंडित जी के साथ कई और व्यक्ति--

यह मूर्ति पुराने जमाने के इंसानों की बनाई हुई है जो एक लाइन में खड़े हैं।

यह एक शादी समारोह का दृश्य है समारोह में कई और लोग आए हैं।

सामने एक ग्रे कलर की हुंडई कार खड़े हैं जो अपनी जगह पर पार्क हो रही है।

बगीचे के बॉर्डर पे कुछ फूलों के गमले रखे हुए है तथा आस पास का इलाका पेड़ पौधों से घिरा हुआ है।

सैलोन की अलमारी में कई सारे कॉस्मेटिक सामान रखी हुयी है।